बड़ा सी नदी दिखाई दे रही है जहाँ पर बड़ी-बड़ी नावें दिखाई दे रही हैं सामने की तरफ बड़ा सा --

सामने की तरफ से खिडकियाँ दिखाई दे रही हैं। वेंटिलेशन दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा पूल दिखाई दे रहा है उसके नीचे कुछ वाहन रखे हुए हैं।

दो महिलायें नजर आ रही हैं जो गिटार वाद्य यंत्र लेकर चला रही है। नीचे --

आस पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उपर बादल दिखाई दे रहे हैं।